यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग--

और ये एक चर्च है यहां के सामने बहोत ही अच्छे फूल रखे हुए हैं।

और काफी लोग पैसे निकालने के लिए खड़े है।

और न्यूज़ पेपर टोकरी के ऊपर बिछाया हुआ है न्यूज़ पेपर --

इनके पीछे यीशु मसीह जी दिख रहे हैं।